और रेड कलर की कुछ डिजाइन दिखाई दे रही है | दीवालों पर वाइट कलर की दीवाल दिखाई दे रही है ब्लैक कलर की डिजाइन दिखाई दे रही है।

पीछे ये पहाड़ दिखाई दे रहा है पेड़ दिखाई दे रहे है खुला असामान दिखाई दे रहा है।

फैन दिखाई दे रहा है एक गेट दिखाई दे रहा है डिजाइनिंग लाइटिंग दिखाई दे रही है एंड एक बोर्ड दिखाई दे रहा है ।

ब्लू कलर का पर्दा दिखाई दे रहा है कुछ ए.सी. दिखाई दे रही है. एक कम्प्यूटर दिखाई --

यह एक फ्रिज दिखाई दे रहा है पानी दिखाई दे रही है बोर्ड दिखाई दे रही है कुछ लोग दिखाई दे रही हैं कंकड़-पत्थर दिखाई दे रहे हैं बड़े-बड़े पहाड़ दिखाई दे रही हैं ।

एंड कुछ लोग दिखाई दे रहे है ढेर सारे लाइटिंग दिखाई दे रही है कुछ सामान दिखाई दे रहे है रेक दिखाई दे रहे हैं।

यह एक शॉप दिखाई दे रही है यहाँ पर ढ़ेर सारे गॉगल्स दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर ढेर सारे लोग दिखाई दे रहे है कुछ गर्ल्स कुछ बॉयज लेडीज़ एंड गेट्स --

यहाँ रोड दिखाई दे रहा है | बहुत बड़ा जंगल दिखाई दे रहा है | पहाड़ दिखाई दे रहे हैं।

ब-अ ढेर सारे ऑटो दिखाई दे रहे है कार दिखाई दे रहे है ढेर सारे लोग दिखाई दे रहे है।

यहाँ एक ए.टी.एम. दिखाई दे रहा है बैंक दिखाई दे रही है यहाँ पर बाइक स्कूटी दिखाई दे रही है कुछ लोग दिखाई दे रहे है रेड कलर का बोर्ड दिखाई दे रहा है ।